पौधे लगे हुए है इधर साइड में कुर्सी पड़ी है छोटी सी स्टूल पड़ी है दो मोटरसाइकिल खड़ी है एक आदमी खड़ा है ऊपर लाइटें जल रही है।

और नीचे जमीन के ऊपर छोटे छोटे पत्थर पड़े है इंटे पड़ी है।

और ऊपर भीं कुछ बनाया हुवा है कौन आगे देखें तो इसके आगे एक बहोत ही बड़ा पिलर हैं।

सामने तस्वीरें लगी हुई है जैसे काली मां की और लक्ष्मी माता की।

जो दो मंजिल ऊंचा है ऊपर भी बहुत सारे कमरे बने हुए हैं नीचे भी कमरे बने हुए हैं।

इस दुकान के अंदर बहोत सारी किताब पड़ी है बहोत सारी अलग अलग किताबे जची हुई पड़ी है।

और इस दीवार के पीछे इधर साइड गाड़ियां खड़ी है और इधर वाली साइड बहुत ही बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

एक डस्टबिन पड़ा है स्कूटी एक लड़की है।

इनके पीछे एक ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल खड़ी है।